यह एक बस है ब्लू कलर का जिसने जिसमें एक आदमी चढ रहा--

है जैकेट पहन के येलो कलर का सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

सोफे पे एक औरत बैठी हुई है एक दो आदमी बैठे हुए हैं व्हाइट कलर के सोफे है।

यहां एक ग्रे कलर का गेट है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगा है।

गेट के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है जोकि ऑरेंज और ब्लैक कलर की है।

गेट के अंदर एक शॉप है जिसमे बहुत सारे पैकेट्स लटके हुए हैं।

और वॉटर फाउंटेन के जस्ट साइड में बहुत सारे पेड़ हैं जो कि येलो येलो कलर के हैं।

एक पार्टी इवेंट है जिसके पीछे एक पोस्टर लगा है जिसपे लिखा है डी_जे ।

अंदर इवेंट इसमें तीन चार डी_जे हैं।

इसके ऊपर कांच लगी हुई इस पे सामान रखा गया है ऊपर एक कड़ाही है दो आदमी खड़े हुए हैं।

एक ने जैकेट पहनी हुई एक ने टी शर्ट पहनी हुई है एक बडा सा तावा रखा हुआ है।

और व्हाइट कलर का घर है और उसके बाद गेट है सामने एक गेट नीचे ईटें बिछी हुई--

इस पे एक आदमी बैठा हुआ है लुंगी और शर्ट पहेन के उसके हाथ में एक चप्पू है।

यह एक मैरिज हाल है जिसमें एक आदमी सामने ब्लू कलर का पैंट पेंट पैंट और कोट पहने हुआ है और--

इसके जस्ट बगल में एक औरत खड़ी हुई है साड़ी पहने।

आगे लोहे की चेयर रखी दिख रही है।

और उस फैक्ट्री के आगे पूरे मिट्टी का मैदान है और उस मिट्टी मैदान में एक आदमी खड़ा हुआ--

अंदर पिंक कलर का पेंट हुआ है सामने।

ब्लैक कलर की एक कार है व्हाइट कलर की हाइवे है दो आदमी है व्हाइट कलर के सा--

दो तीन मशीन रखी हुई है एक खिड़की है नीचे कारपेट

और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नीचे बहोत सारी सरिया भी बिछाई गई है लोहे की।

पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे है और पीछे एक घर है जो कि दो तल्ले का है व्हाइट कलर का पेंट है।

यह एक रजवाड़ा फार्म है जिसके ऊपर एक वॉल है।

कोट पैंट पहेने स्वेटर पहेने पैजामा पहेने--